और यहाँ पर हमें एक आग बुझाने वाला यंत्र दिखाई दे रहा है और एक काँच का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और लाइट्स दिखाई दे रही है।